यह एक जंगल है इस जंगल के बीच में एक रोड बनाया गया है और रोड के बगल में ही एक कैंपस है और इस कैंपस के अंदर एक बाइक लगा हुआ है और यहाँ पे आस-पास ढेर सारा पेड़-पौधा है और यह पौधा हरयाली से भरी हुई है ।

यह एक बहुत ही सुंदर घर है इस घर के आगे पीछे से कैंपस बनाया गया है।

यह एक टावर है इस टावर में ढेर सारा तार लगा हुआ दिखाई दे रही हैं ।

और सारे लोग मछली खरीद रहे हैं।